महिला को दे रहा है इलेक्ट्रिक वेहिकल लाल रंग का है सामने लोहे का गेट लगा हुआ है।

जो पीले रंग के हेलमेट पहने हुए है। वो व्यक्ती खडा है वो नील रंग का कोट पहना है।

दुकान के बगल मे एक व्यक्ति बैठा है जो नीले का शर्ट पहना है दुकान के चौराहा मे एक फ़ोन का कार्टून रखा हुआ है बगल मे बिजली का ट्रांसफार्मर है।

बड़ा होडिंग बोर्ड जिस मे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है बैंक के बाहर कुछ गाड़िया खड़ी हुई है और इनके बगल एक --

एक शादी समारोह जिसके स्टेज के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है स्टेज गुलाबी रंग के कपड़ो और आर्टिफीसियल फूलो से सजाया गया है।

है जो बादलो को स्पर्श करते हुए प्रतित हो रही है।

एक व्यक्ति जीम में एक रननिंग इक्विपमेंट में वर्क आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है।

जो बगल में एक कुर्सी के पास खड़े है।

एक एक मैन रोड में कुछ लोग बाजा बजाते हुए दिखाई दे रहे है इसमें --

लगी हुई है। एक व्यक्ति कुर्सी को पकड़ा हुआ है जो लाल रंग का है। सामने मे एक व्यक्ति बच्चा को पकड़ा हुआ खड़ा है।

डांस करते हुए दिखाई दे रहे है और इ स्टेज के उपर में कुछ लोग बैठे हुए है जिस में कुछ बच्चे और कुछ --